यह पीले रंग की क्रेन है पीछे--

और एक अ पीछे एक दीवार भी है।

एक मेज है बहोत से बच्चे इस पे बैठे मेज़ के किनारे पीले रंग की कुर्सी है।

डेकोरेशन के सामान रखे हुए हैं और पीछे एक सीनरी लगे एक तीन सीनरी लगी है।

गुलदस्ते लगे है गुलदस्ते में आर्टिफीशियल फ्लावर्स लगे हुए है टेडी बियर रखा हुआ है।

एक कृषि विज्ञानं केंद्र है और यह एक--

ए पीले रंग की पट्टी में लिखा हुआ है यहां एक पेड़ लगा है।

वो भी काले रंग का दिख रहा है पीले रंग की मेज है ऊपर काले रंग से लगा हुआ है प्लाईस वे--

और लड़का खड़ा हुआ है लड़की बैठी हुई है।

और साइड में हरे रंग के पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

और ए छोटे छोटे पेड़ भी लगे हैं और बड़े बड़े पेड़ --

पेड़ो के ऊपर रंग से अ डिज़ाइन बनाई गयी है।

किनारे किनारे कटे फटे पेड़ लगे हैं बीच में रास्ता है।

और दीवारें नीले रंग की हैं फर्श में नीचे हरे रंग की है।

सफेद रंग की ड्रेस पेहने है कराटे वाली पीछे लाल रंग कार्टिन बिछाया हुआ है।

और एक दरवाज़ा है बड़ा सा गेट लगा हुआ है।

ऊपर बोर्ड लगा हुआ है और इधर एक जाली जैसी बनी हुई है।

एक छोटे छोटे से पौधे लगे हैं और नीचे मिट्टी है।

यह एक ऑफिस है अं यहाँ पर बिजली का सब अलेक्ट्रॉनिक का सामान का वो है।

नदी है नदी में बड़ी सी नाव है।

नहाते हुए पूजा भी कोई कर रहे हैं पीले रंग की नाव है नाव में भी कुछ भी लोग खड़े हैं दो ना दो तीन नाव है।

सब में लोग बैठे हुए है बाकी के आदमी नहा रहे हैं औरते नहा--

सामने छोटी छोटी पौधे लगी है और लाल रंग का भी पत्थर का बना हुआ है और --

इन्दु पानी बनी हुई है नीले रंग का शेटर है हरे रंग का शेटर है।

ये जो सफ़ेद रंग की है और उनके बाद में--

दो दो तीन ओर छोटे छोटे टेडी बियर है।

छोटे छोटे गमले हैं सजावट के समान है इसमें एक नीले रंग का टेडी बियर है।

और यह एक साइकिल भी है हरी हरी हरे रंग की और--

एक मैदान है मैदान मे काले रंग की मोटरसाइकिल खड़ी है। एक हेलमेट रखा हुआ है काले रंग का।

और दो पेड़ दिख रहे है हरे रंग के आसमान दिख रहा है छोटे छोटे पहाड़--

कार का शोरूम है यहाँ कई कार खड़ी है जो सफेद रंग की है।

यह बच्चो के पढ़ने के लिए यहाँ पर मेज लगाई गई ए।

ए टायर की फोटो ऊपर लगी हुई हैं अ काले रंग के सब टायर दिख रहे हैं इसमें लिखा है कि पलेस ।

और ए पेंट ए अंदर की तरफ पीले रंग का--

एक आदमी बैठा हुआ है नीले रंग की जींस में पैंट पहने है और जूता पहने है एक कुर्सी रखी है।

और एक ठेले पर खूब ढेर सारी मछलियाँ रखी हुई हैं उसमें कुछ बड़ी मछली है कुछ छोटी मछली है।

बैंड बाजा है ये अ इसमें कई ठो स्पीकर लगे हुए हैं लाउडस्पीकर लगे हुए है।

नीले रंग की है और यहाँ पर लकड़ी का सामान बनाया जाता है और सामने शीशा भी रखा हुआ है।

बाइक खड़ी है दुकान है और बगल में पेड़ है।

टाई नीले रंग की शर्ट--

एक होटल है यहाँ पर ए सफ़ेद रंग की प्लेटे रखी है।

कटोफ लेते हुए चावल रखा हुआ है दो उ दो चम्मच है।

और अगल बगल लोग बैठे हुए हैं एक मेज पर ए दो में राइस रखा हुआ हैं।